इसके अंदर स्टेचू खड़े हुए हैं जिन्होंने शर्ट - पैंट पहना हुआ है| उसके नीचे हमारी बिल्डिंग पर पिज़्ज़ा हट का बोर्ड लगा हुआ है जिसके सामने मोटर साइकिल साइकिल और कुछ लोग खड़े नज़र आ रहे हैं।

लाइट लगी हुई है हरे कलर की कप रखे हुए है एक इंसान टेबल पर बैठा है और पीछे --

औरत मंदिर के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है| एक आदमी मीडिया की तरफ चलता हुआ नजर आ रहा --

फोटो में एक प्ले ग्राउंड दिखाई दे रहा है जिस पर कुछ लोग नजर आ खेलते हुए नजर आ रहे हैं।